ब्रिज के उस पार बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

आसमान में बादल लगे हुए हैं।

यहां एक टायर सर्विस की दुकान है।

यह पिक्चर एक अस्पताल की है।

भगवान की मूर्तियो को हार चढ़ाया है।

आसमान साफ और नीला है।

इस फोटो में दो इंसान दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

जिम में पंखे भी लगे हुए हैं।

शादी में दूल्हे के साथ दो बच्चे बैठे हुए हैं।

शादी में कई लोग कुर्सी में बैठे हैं।

बाहर भी बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है।

यह एक फल की दुकान है।

इस फोटो में आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में दूर एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है।

पीछे एक फायर एक्स एक्सटेंशन भी है।

सामने बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

दुकान काफी ज्यादा पुरानी लग रही है।

विथ मे लकड़ियां काट के रखी हुई हैं।

इस पार्क में बहुत सारे सोलर लाइट हैं।

इस फोटो में बादल दिखाई दे रहे हैं।